रेड कलर का टी शर्ट पहना है ऊपर व्हाइट कलर का रुमाल लगाया है।

कुछ पंखे लगे हैं लाइटे जल रही है दो दरवाजे हैं दो खिड़कियां हैं एक कूलर लगा है।

एक कन्ट कंट्रक्शन का काम चल रहा है।

सामने एक बिल्डिंग है बिल्डिंग में येलो कलर का पत्थर लगा हुआ है।

कुछ सोफा सेट लगे हुए हैं सोफो का कलर ग्रीन कलर है।

सामने एक रूम है रूम में वाइट कलर का पर्दा लगा है पर्दे पे गुब्बारे लगे हैं।